यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा समान रखा हुआ है यहाँ पर जमीन में एक मोटी सी रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।